और स्टूइडेण्ट्स हमें दिखाई दे रहै है।

ऊपर हमे यहाँ पर अ छत्त दिखाई दे रही है चद्दर की मारकुली लगी हुई दिखाई दे रही है बल्ब जलता --

और यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर भी लगे हुए दिखाई दे रहे है व्यक्तियाँ भी हमे दिखाई दे रहे है ।

मिट्टी हा अम मिट्टी दिखाई दे रही है

और सामने यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग खड़े हुए है और ऊपर हमें --

व्यक्ति दिखाई दे रहे है और यहाँ लोहे का एक रिंक बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर छत हमे दिखाई दे रही है।

जहाँ पर हरी - हरी घास दिखाई दे रही है पत्तियां हमे दिखाई दे रही है पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और नीचे शॉप दिखाई दे रही है बिजली के तार हमे दिखाई दे रहे है लाइट जलते हुए हमे दिखाई दे रही है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।